जो बैंक के अंदर भी है बाहर भी है पैसा निकाल रहा है।

यहाँ से कार नई खरीद कर ले जाते भी हैं।

और दारिह भी बनाया जाता है जैसे लग रहा है ये उद्घाटन नयी हुई है।

यहाँ पर सड़क है सड़क के किनारे खेत है उस खेत में धान रोपाया हुआ है उस धान में पानी भी है।

सरस्वती पूजा कर रहे हैं एक लड़का भगवान सरस्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं उ सरस्वती जी बहुत सुंदर है व्हाइट कलर के वीणा लिए बैठी हुई हैं।

और एक रूम बहुत सुंदर बना हुआ है उसी के अंदर --

ये भारतीय डाक है इस डाक में चिठ्ठी डलाया जाता है जगह-जगह पे पहुंचता है यहाँ का चिठ्ठी वहाँ उधर से आता भी है यहाँ पर एक जेंट्स भी बैठे --

यहाँ पर बहुत सारा घर बना हुआ है घर के उपर छपरा रखा हुआ है एक आदमी खरा है वो वाईट कलर का कपड़ा पहने हुआ है।

एक गड़ी पर सवार हो करके आदमी लोग राम-सीता जी को लेकर के कहीं घुमाने ले जा रहे है वो घोड़े पर सवार है बहुत भीड़-भराके के साथ है सजावट --